गांव के पास में है ।

ज्यादा आदमी लोग जाना चाहते है इसमें खेलना पसंद करते है।

ये गंगा जी है ताकि सब लोग छठ पूजा कर रहे हैं बहुत से बहुत ढेर से ढेर ज्यादा उम्मीद की भीड़ लग चुकी हैं और --

पेंट कला हुआ है और आगे से लिखा हुआ स्वागतम लिखा हुआ है और फूल है। बगीचे हैं। इसमें --

और इसमें कोबी बैगन आदि लहसुन परवल अमरुद इसस गाजर केले --

व्हाइट कलर की है पिंक कलर की है और ब्लू कलर की है जो की योगा सब लोग सीट पे बैठ के कर रहे है ।

आसमान बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है फूल --

एक प्लेट मे थाली में खाना रखा हुआ है चावल है और सलाद है दाल है सब्जी है ।

और तीन कटोरी में दाल चावल सब्जी रखा हुआ है जो टेबल पे रखी हुई है बहोत अच्छी है स्वादिष्ठ है जो खाएगा तो बहोत अच्छा लगेगा।

गांव के पास में है जो की सब लोग मोमबत्ती जलाने आए है और बच्चे दो है।

ये सब लोग फूल-पत्ती चढ़ा रहे हैं। पूजा कर रहे हैं। मंदिर का गेट देखने में अच्छा लग रहा है। काफी सुंदर लग रहा है जो कि पूजा सब लोग कर रहे हैं।